यहाँ पे फूल भी कितना अच्छा है। बाइक गाड़ी ऑटो घोड़े बहुत सारे यहाँ पे भीड़ लगाये हैं। यहाँ रोड बिलकुल साफ है। देखे यहाँ पे बिल्कुल सफाई भी बहुत ज्यादा है। बहुत-बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है।

है बहोत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ बहोत ज्यादा भीड़ होता है। हनुमान जी के मंदिर पे और दर्शन करने के लिए दूर-दूर से --